यह पूरे सीमेंट काँक्रेट के दिवार के अंदर ये है उसके बाजू मे बहुत सारी यह खिडकीया है और कुछ गाड़ियां खुली हुई है धन्यवाद।

किसी रेस्टोरंन्ट के अंदर का पोरशन दिख रहा रेस्टोरंन्ट के अंदर में काउंटर पे कूछ खाने की चीजे दिख रही है साईड में--

कुछ गाड़िओं के स्पेअर पार्ट यहा मिलते हुए दिख रहे है छत पूरे सफ़ेद कलर की है चारो तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही है और रोशनाई से जग मगया है धन्य--

बहुत सी लाइट जगमगाई है चारो तरफ अ लाइटों से जगमगाता हुआ यह दिख रहा है धन्यवाद।

की रिपेरींग शुरू है कुछ गड़िया रिपेरिंग करने के लिए आए हुए है फर्श बहुत ही पॉश दिख रहा है यहा चरो तरफ लाइटो से ये गेराज जगमगाया है धन्यवाद।

एक छोटासा कुआ दिख रहा है। आजूबाजुमे हरे भरे घास दिख रहे है। एक रोड दिख रहा है धन्यवाद।

उसके सामने कुछ हरे भरे छोटे-छोटे घास फूस लगे हुए है नीला गगन दीख रहा है और चारो तरफ रोशनाई दिख रही है धन्यवाद।

हरे भरे मैदान मैं चारो और हरे हरबी हरी भरी घास दिख रही है एक झूला लटक ते हुए दिख रहा है और कुछ गटोंका गेट बना गेट दिख रहा है आजू बाजू में लोहे के ग्रिल्ल के कंपाउंड दिख रहे है।

उसके बॉर्डर पर कथे कलर के दिख रहे है आजु बाजू में पेड़ लगे हुए है गेट के सामने कुछ गाड़ी पार्किंग करती हुई नजर आ रही है धन्यवाद।

और ऊपर आसमान मैं बादल छाए हुए दिख रहे है यह बादल इस चीज़ को चार चाँद लगाने का काम कर रहे है धन्यवाद।